और इस पार्क में बहुत ऊंचे-ऊंचे और बड़े-बड़े हरे पेड़-पौधे भी नजर आ रहे हैं और कुछ छोटे-मोटे पेड़-पौधे भी है यहां पर --

और कुछ बाइक और स्कूटीयां भी खड़ी है और कुछ लोग भी खड़े हैं जोकि होटल को देख रहे हैं।

इस फोटो मे एक मंदिर का एंट्रेंस नज़र आ रहा है जो की बहोत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है एंट्रेंस पर बहोत अच्छी करीकारी की गयी है।

और छत पर बहुत सारी लाइटें लगाई गई है इस साड़ी की दुकान में एक ए_सी भी लगी हुई है।

इस पेट्रोल पंप को सफेद और नीले रंग से रंगा गया है।

इस फोटो में एक गार्डन एरिया नज़र आ रहा है इस गार्डन एरिया में बहुत सारी हरी रंग की घास लगाई गई है।

जे जो की एक रेलवे स्टेशन का है यहां पर एक रेलवे ट्रैक भी नजर आ रहा है जिस पर कोई ट्रेन नहीं है।